इस इमेज में यहाँ बहोत घना जंगल दिखाई दे रहा बहोत बड़ा पहाड़ी एरिया पथरीला एरिया दिखाई दे रहा है।

वह पहाड़ी ये या यहाँ सुनसान जगह पर --

यहाँ शटर पड़ी शटर का पाइप पड़ा दिखाई दे रहा है। कार भी दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

इस इमेज में यहाँ भव्य मंदिर है।